टीना हा दिखत हेबड़का जबर दरवाजा दिखत हे आईना दिखत हे ऐसा दिखत हे नूना ह ला बना के दुझन आदमी एमेर बैठे हावे ।

एहु च हा कुछु भगवन होही जेहा फुले च फुल म अति सुन्दर सजे हवय अउ ए दे केला पत्ता मन दिखत हे अउ बनेच कन आदमी मन दिखत हे।

अउ बनेच्कान भाजी भाजी दिखत हे नीम पत्ता हा दिखत है बने छन आदमिन बेठे ह बेचे बर ।